बहुत सारी गाडिये हैं एक औरत खड़ी है नकाब बना हुआ एक आदमी गाड़ी चलते बात कर रहा है फ़ोन पे रिक्शा खड़ा है कार खड़ा है ठेले खड़ी है आस-पास बिल्डिंगे बनी है।

तीन आदमी खड़े हैं एक दुकान है उसे पर लिखा है मिथिला बुक सेंटर बहुत सारी किताबें रखी है ।

इधर बहुत सारे लोग खड़े हैं एक औरत साड़ी पहनी है बैग हाथ में रखी है एक आदमी खड़े है।

एक सफेद कलर का एक गुलाबी कलर का एक मछली ले रहे है मछली काट रहे हैं ये पूरी तरह मछली मछली हो रही है बाल्टी रखी है टोकरी रखी है।